--तड़से एक सफेद कलर का एक झंडा है और बड़े-बड़े पेड़-पत्तियाँ लगी हुई है कुछ लोग है जो की ऊपर की ओर चढ़ रहे है चारो तरफ से दूर है ऊपर खुला आस--